मेरे सामने एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस में बहोत सारे--

समान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर खिड़की भी--

वहां पर कुछ खिड़कियां भी दिखाई--

मेरे सामने एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक सैलून नजर आ रहा है सैलून में बहोत सारे शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहा पर किसी की दीवार का कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है यहा पर बहुत सारे पंखे भी लगे हुए दिखाई दे रही है।

मेरे सामने एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है यहां पर स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग भी नजर नजर आ रहे हैं।

और स्विमिंग पूल का पानी बहोत सारा ज्यादा दिखाई दे रहा हैं।

और एक क्रेन भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहां पर दो आदमी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।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

ऊपर बहोत लाइटिंग बिकी हुई दिखाई दे रही है।